पीएचपी कुकीज़ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
कुकीज़ एक महत्वपूर्ण भाग है जब आपको विशेष वेबसाइट बनानी होती है जहाँ आप उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी संचित करते हैं
कुकी की परिभाषा है कि यह आपके कंप्यूटर पर या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेबसर्वर द्वारा संचित डेटा का एक सेट है
इसका मतलब है जब हम एक वेबसाइट पर जाते हैं हमारी जानकारी संचित होती है और इस्तेमाल होती है जब हम वापस उस वेबसाइट पर जाते है लेकिन हाँ हमें रिमेंबर मे ऑप्शन का चुनाव करना होगा
अतः आपको हर बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है
लेकिन यदि आपने रिमेंबर मे बटन का चुनाव नहीं किया है आप सेशन्स यानि सत्रों में काम करेंगे जो बंद होंगे जैसे ही आप ब्राउज़र बंद करेंगे
अतः सेशन्स मौजूद नहीं रहते लेकिन हाँ कुकीज़ बाद में उपयोग के लिए संचित रहते हैं
अतः चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुकी कैसे बनाएँ
सेटकुकी फंक्शन का उपयोग करके ऐसा करते हैं
फंक्शन 5 पैरामीटर लेता है लेकिन में सिर्फ 3 का उपयोग करूँगा
पहला महत्वपूर्ण जो मैं उपयोग करूँगा वह है कुकी का नाम जिसे मैं नामे सेट करूँगा
दूसरा है डेटा जिसे कुकी के भीतर संचित करना है और यहाँ मैं टाइप करूँगा एलेक्स अब अगला थोड़ा और मुश्किल है
यह टाइम है जब उस कुकी की अवधि समाप्त होती है
अब इसे सेकंड्स में सेट करने की आवश्यकता है
और दिखाने के लिए मैं एक्सपायर के लिए ईएक्सपी नामक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ
मैं यहाँ कुछ वेल्यू जोड़ता हूँ
अभी के लिए मैं शून्य जोड़ रहा हूँ
अतः यदि इसे एको करते हैं और अभी के लिए इस कुकी फंक्शन को हटाते हैं
मैं यहाँ सिर्फ टाइम को एको कर रहा हूँ यह बताने के लिए कि यह क्या करता है
चलिए रिफ्रेश करते हैं
आप यहाँ कई अंको को देख सकते हैं
यह एक विशिष्ट time स्टैंप है
और यह विशिष्ट time स्टैंप जनवरी 1एसटी 1970 के पहले के सेकंड्स की संख्या है
अतः 1 जनवरी 12 बजे साल 1970
आप इसे यहाँ देख सकते हैं - यहाँ सेकंड्स की संख्या भविष्य के एक दिनांक के बराबर है
अतः उदाहरण के लिए अभी यह 88 है अब 89 और जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यह हर सेकण्ड के साथ बढ़ता है
तो यह विशिष्ट वेल्यू जोड़ने के लिए एक उपयोगी तरीका है
अब हमें एक दिन में सेकंड्स में टाइम खोजना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह कुकी एक दिन में समाप्त हो जाए
अतः दिन में मिनट का पता करने के लिए मैं 60 से 24 गुणा करता हूँ
और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसके लिए उत्तर को 60 से गुणा करते हैं जो है 86400
यदि हम शून्य को 86400 से बदलते हैं हमारे पास एक्सपायर वेरिएबल है जो कि अभी दिन के द्वारा भविष्य में समय को स्थाई रखता है
समय बचाने के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ एक्सपायर वेरिएबल को जोड़ूँगा
अतः यह फंक्शन एलेक्स वेल्यू के साथ हमारी नामे नामक कुकी को सेट करता है और यह एक दिन में समाप्त हो जाती है - यह टाइम फंक्शन का उपयोग कर सेकंड्स में पढ़ी जाती है
इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है इसका मतलब है कि यह सही है
अब मैं इन सबको कमेन्ट करने के लिए ब्लाक कमेंटिंग का उपयोग करूँगा
और इसके नीचे इस कुकी को एको करते हैं
लेकिन इसको कमेन्ट करने का कारण है कि आपको हर बार कुकी सेट करने की आवश्यकता नहीं जब उपयोगकर्ता पेज पर आता है
यदि आप स्क्रिप्ट में लॉग का उपयोग कर रहे हैं और आप अपने वेबसाइट पर उपयोगकर्ता को लोगिन करने की अनुमति देते हैं आपको सिर्फ एक बार इसे लागू करना होगा और फिर कुकी संचित होती है
और इसे इस समय के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हमने यहाँ सेट किया है
अतः मैं एको सेट करता हूँ और डॉलर चिन्ह का उपयोग करूँगा माफ कीजिये अन्डर्स्कोर कुकी
यहाँ भीतर कुकी का नाम है अतः मैं नामे टाइप करूँगा रिफ्रेश करूँगा और आप एलेक्स देख सकते हैं
इसकी जाँच कर सकते हैं
यदि मैं ब्राउज़र बंद करता हूँ कंप्यूटर रिस्टार्ट करके फिर से इस पेज पर आता हूँ यह फिर भी एलेक्स ही रहेगा क्योंकि यह कंप्यूटर पर संचित हो चुका है
ठीक है यदि मुझे एक और कुकी सेट करनी है मानिए कि अगे नामक कुकी यहाँ सेट करता हूँ और मेरी उम्र 19 है
और एक्स्पाइरी टाइम को ऐसे ही रखते हैं
इसे यहाँ ऊपर रखते हैं
इसे अच्छे ढंग से दिखने के लिए हम ब्लॉक ब्लाक कमेन्ट को लाइन कमेंट से बदलते हैं
अतः एक्स्पाइरी टाइम के लिए यहाँ एक अलग कुकी सेट करते हैं
और उसकी एक्स्पाइरी टाइम वही होगी
चलिए देखते हैं कि हमें सही मिलता है या नहीं
हम इसे हटा देते हैं
हमने समान एक्स्पाइरी टाइम के साथ एक अन्य कुकी सेट की है
रिफ्रेश करते हैं ठीक है यह सेट हो चुका है
तो अब इसे कमेन्ट करते हैं और यहाँ इसे एको करते हैं
तो आप एक पेज पर एक से ज्यादा कुकी सेट कर सकते हैं
इसे रिफ्रेश करते हैं और हमें 19 मिलता है
हम एक वाक्य में भी कुकी सेट कर सकते हैं
इसके लिए मैं टाइप करूँगा एचो अंडरस्कोर कूकी नामे और कॉनकेटेनेट है इस और फिर अगे जोडूंगा
अतः हमें संचित कुकी से यह वाक्य मिलेगा Alex इस 19
और फिर से यदि मैं ब्राउज़र बंद करता हूँ और कंप्यूटर रिस्टार्ट करता हूँ या दो घंटे बाद फिर से आता हूँ तब भी उपयोगकर्ता के इस्तेमाल के लिए यह जानकारी इस कंप्यूटर पर संचित होगी
अतः आप देख सकते हैं कि वे इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हैं और बनाने के लिए तथा उपयोगकर्ता को एको करने के लिए आसान भी हैं
प्रिंट र या प्रिंट अंडरस्कोर र नामक फंक्शन हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं
और हम यहाँ डॉलर अंडरस्कोर कूकी एको करते हैं
हम इसे बाद में अलाइन करेंगे
इसे रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अरै है और एक अलग वेल्यू मिली है
हमारे पास नामे है जोकि एलेक्स है और अगे है जोकि 19 है
अतः यह कुकीज़ है और इन्हें सेट किया गया है और यह कुकीज़ की वेल्यू है
यह काफी उपयोगी है यदि आपको इसे एको करना है
अच्छा तो एक अन्य फंक्शन है जिसे मैं इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में बताऊंगा और एक कुकी सेट की है या नहीं इसका पता करने के लिए मैं एक इफ स्टेटमेंट का उपयोग करूँगा
और मैं दिखाऊंगा कि कुकी को अनसेट कैसे करें
अतः हमसे दूसरे भाग में मिलिए
यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद